आस-पास काफी पेड़ है।

कुछ गाड़ियां भी आ जा रही है।

ये चित्र एक पेट्रोल पंप का है।

छत पर सफेद-सफेद लाइटें लगी हैं।

और बहोत सारी घास उगी हुई है।

एक बड़ा सारा पेड़ है।

काफी तरह की मछलियां रखी हुई है।

मछलियां नीले रंग की पन्नी पर है।

और एक स्लाइड भी लगी हुई है।

कुछ लोग ठहल रहे है।

जिसके बाहर लाल रंग की गाड़ी खड़ी है।

सफेद रंग का दरवाजा दिख रहा है।

उस पर एक फूल का गुलदस्ता रखा हुआ है।

आसपास किले के काफी पेड़ लगे हुए है।

बहुत सारा पानी है।

ये चित्र एक मंदिर का है।

जिसके आसपास काफी सारे कमरे बने हुए है।

ये एक घर की तस्वीर है।

जिसको देखने को काफी लोग खड़े है।

लोहे की जालियां लगी हुई है।

ये एक केक की तस्वीर है।